लग रहा है काला है। .

यह एक फील्ड है। फील्ड में कई सारे पेड़-पौधे बोहोत ही है लेकिन उसमें से कुछ पौधे हैं --

देखने में एक बोहुत अच्छा मंदिल है। ये मंदिल हिन्दू का है। ये ऊपर का जो शेष भाग है वो भाइट है नीचे --